एक ब्रिज बीचे बीच है तो एक ब्रिज किनारे की साइड है।

जो की येलो और हरे रंग का है।

तथा बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं घने-घने --

जिनका कलर भूरे रंग का है।

इस फोटो के अन्दर आप देख सकते है कि लठ से बना एक --

के आस-पास भी कई व्यक्ति खड़े हो रखे है तथा उस व्यक्ति के अगल-बगल लोहे के काफी बड़े-बड़े पिलर है।

फोटो के अन्दर देख सकते हैं की एक साइकिल खड़ी है तथा रास्ते हैं रास्ते के किनारे दो बाइके भी खड़ी हैं ।

गुलाबी कलर का पर्दा भी चढ़ा रखा है तथा एक स्टेज है। स्टेज पे लाल कलर की कालीन भी बिछा रखी है उस --